जावा में अरिथमेटिक ऑपरेशन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप विभिन्न अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे जैसे एडिशन जोड सबट्रैक्शन घटाव मल्टीप्लिकेशन गुणा डिविजन भाग और इनका उपयोग कैसे करें
इस ट्यूटोरियल में हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 37
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपके सिस्टम पर इक्लिप्स संस्थापित होना चाहिए
और आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स में फाइल को कैसे बनाएँ सेव और रन करें
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
यहाँ ऑपरेटरों की एक सूची है और गणितीय ऑपरेशन जो वे करते हैं
धन का चिन्ह जोडने के लिए ऋण का चिन्ह घटाने के लिए एस्टरिस्क का चिन्ह गुणा के लिए और स्लेश भाग के लिए
हम प्रत्येक को विस्तार से देखेंगे
यहाँ हमारे पास बाकी कोड के लिए आवश्यक इक्लिप्स इडे और स्केलेटन है
हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन्स नाम का क्लास बनाया है और मैन मेथड जोडा है
कुछ वेरिएबल्स जोडें
इंट एक्स 5 इंट य 10 इंट रिजल्ट एक्स और य ओपरेंड होगें और रिजल्ट ऑपरेशन्स के आउटपुट को संचित करेगा
उन्हें जोडें और रिजल्ट को प्रिंट करें
Result xy सिस्टम
प्रिंटलन पैरेंथेसिस में रिजल्ट कंट्रोल एस से सेव और कंट्रोल फ़11 से रन करें
हम देखते हैं कि जोड का आउटपुट रिजल्ट में संचित हो गया है और वैल्यू प्रिंट हो गई है
अब वैल्यूज बदलें x75y 15 सेव और रन करें
हम देखते हैं कि आउटपुट उसी तरह बदल गया है
अब ऋणात्मक वैल्यूज जाँचें य 25 सेव और रन करें
हम देखते हैं कि 75 प्लस 25 का आउटपुट प्रिंट हो गया है
अब घटाव य 5 जाँचें और xy से x य में बदलें
सेव और रन करें
हम देखते हैं कि 75 5 का आउटपुट प्रिंट हो गया है
अब गुणा का अभ्यास करें
ऋण को एस्टरिस्क में बदलें
सेव और रन करें
हम देखते हैं कि एस्टरिस्क का उपयोग करके हम 75 द्वारा 5 का गुणा कर सकते हैं
अब भाग का अभ्याय करें एस्टरिस्क हटाएँ और स्लेश टाइप करें
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट अपेक्षित है
अब देखते हैं कि क्या होता है जब अपेक्षित परिणाम दशमलव बिंदु संख्या है
5 से 10 बदलें
परिणाम 75 होना चाहिए
अतः रिजल्ट को फ्लोट में बदलें

सेव और रन करें
ध्यान दें हालांकि अपेक्षित परिणाम 75 है हमें आउटपुट 70 प्राप्त होता है
यह इसलिए क्योंकि भाग में शामिल दोनों ओपरेंड इंटिजर हैं
य को फ्लोट में बदलें y10f सेव और रन करें
अब हम देख सकते हैं कि परिणाम अपेक्षित है
ध्यान रखें कि जब अपेक्षित परिणाम एक फ्लोट है तो अपेक्षित परिणाम पाने के लिए एक ऑपरेंड फ्लोट होना चाहिए
अब देखते हैं कि क्या होता है जब यहाँ एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं
सभी ऑपरेंड्स को हटाएँ
इंट result 84 2 सेव और रन करें

हम देख सकते हैं कि आउटपुट अपेक्षित है
अब ऋण को स्लेश में बदलें
अब आउटपुट 6 होगा यदि जोड को भाग से पहले किया जाता है
या यह 10 होगा यदि भाग को जोड से पहले किया जाता है
रन करें और आउटपुट देखें
हम देख सकते हैं कि आउटपुट 10 है और भाग जोड से पहले किया गया है
क्योंकि भाग का ऑपरेटर धन के ऑपरेटर से अधिक प्रिसिडेंस है
ऐसी स्थितियों में यदि हमें प्रिसिडेंस ओवरराइड करने की आवश्यकता है हम पैरेंथेसिस कोष्ठको का उपयोग करते हैं
पैरेंथेसिस को जोडकर हम जावा को भाग से पहले जोडने के लिए निर्देश देते हैं
अब फाइल को रन करें
हम देख सकते हैं कि जोड पहले होता है और अपेक्षित आउटपुट 6 है
नियम के अनुसार पैरेंथेसिस का उपयोग ध्यान में रखें जब ऑपरेशन्स का क्रम स्पष्ट नहीं है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
हमने सीखा जावा में सामान्य गणितीय ऑपरेशन्स को कैसे कार्यान्वित करें
ऑपरेटर प्रिसिडेंस और इन्हे कैसे ओवरराइड करें
इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रुप में पता करें मोड्यूलो से क्या तात्पर्य है और यह क्या करता है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारें में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध ट्यूटोरियल को देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें